बागल में जय महाकाल जय महाकाल लिखा हुआ है।

बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं जिसमें फूड का परचार किया हुआ है एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें दो तीन प्लग लगे हुए हैं।

आ दिवाल जो कि हरा कलर का और मिट्टी कलर का है और दरवाजा भी मिट्टी कलर का है।

और एक आदमी है का टी शर्ट पहना हुआ है उसके हाथ में एक कैंची है जिससे वह आदमी का दाढ़ी को सेट कर रहा है। यहां पे गुलामी कलर की चेयर भी लगे हुए --

अंदर में दो आदमी हैं जो कि एक चेयर पर बैठा हुआ है। बाहर में भी दो आदमी हैं जो चेयर पर बैठा हुआ है ।

यह एक अम छोटा सा पोखर है यहां पे बहुत सारे आदमी नहा रहे हैं बहुत सारे आदमी नहाने के लिए आए हुए हैं।

यहां पर पाटी चल रही हैजहां पे बहुत सारे ड्रिंक के सामान रखे गए हैं। पानी और ड्रिंक भी रखा हुआ है ग्लास रखी--

टेबुल पर सारी मछली को रखा गया है एक लेडिस है जोकि मछली को छील रही है और एक बूढ़े अंकल है जोकि मछली को बेच रहे हैं।

खिड़की खुला हुआ है और सर के पास एक झंडा भी है।

इक कप में जिसे छापा गया है। कप के अंदर कॉफ़ी है बहुत बहुत। और बगल में बहुत बड़े पहाड़ है।

यह एक किसी होटल या रेस्टोरेंट का फोटो है।

बहुत ही खूबसूरत मेडिकल हैआगे में काउंटर भी है एक चेयर है एक टेबुल भी हैजिसके ऊपर एक मग भी है।

पीछे में बिछाया गया है जो की हरा कलर का और लाल कलर का बहुत सारे कुर्सी लगे हुए हैं जिसमें कवर भी है।

यह एक यह एक पोखर है। जहां पर स्विमिंग कराया जाता है।

जिसमे एक ही बोट मे तीन आदमी बैठा हुआ है दूसरे बोट मे भी तीन आदमी बैठा हुआ--

यह इंडियन बैंक है जो की देवघर में है इसके आगे बहुत सारे गाड़ी खड़े हैं।

बाबा भोलेनाथ का त्रिशूल का भी प्रतिबिंब बना हुआ है।

लेडीज एक जेंट्स खड़ा है दरवाजा आधा खुला हुआ है।

शूट सलवार लड़की के लिए लड़के के लिए और बच्चों के लिए किन्ती यहां पर सामान मिलते--

यह एक राशन दुकान है जहां पे बहुत सारे राशन के समान मिलते हैं।

ऊपर मे एक माझा का बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है।

और आदमी हैं जो कि सामान ले रहे हैं अंदर में बहुत सामान बहुत प्रकार के सामान अंदर आए हुए हैं।

यह एक रोड है जो कि खाली है बहुत ही चौड़ी बहुत ही लंबी और सीधी रोड है।

धूप अगरबत्ती मैगी बिस्कुट नमक कुड़कुड़े अन्य प्रकार के सामान मिलते हैं।